यह एक शोरूम है।

सेल रखा है यहां पे काफी सारे।

ले रेड कलर की कलर की हुई है यहाँ पे एक पोस्टर लगी हुई है जी.एस.टी. ।

अमरूद अमरूद रखे हुए हैं।

यहाँ के चारों ओर भी बैलून घर बने हुए हैं।

यह एक कॉलेज है कॉलेज बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं।

पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

यह कॉलेज बहुत ही --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

गुब्बारे से सजी हुई है।

कुर्शी रखी हुई है और काफी सारे पंखे टंगे हुए हैं |

पेड़-पौधे लगे हुए हैं और इस रोड यहाँ पे रोड भी है | रोड से --

ये जगह बहुत ही सुंदर है और यहाँ काफी सारे ग्रिल लगे हुए हैं।

काफी सारे बस लगे हुए हैं।

यह एक रोड है रोड बहोत ही खूबसूरत है और रोड के साइड में --

यह एक घर है और घर बहुत ही सुंदर है और यहाँ पे --

और यहाँ पर एक बोतल रखे हुए है ये घर बहुत ही सुंदर --

और यह टेबल है टेबल पे काफी सारे कॉपियां रखी गई हुई है |

अच्छे हैं | यह टेंपू नई दिख रही है | यह इसके आगे कुछ --

और इस बहोत ही अच्छी जगह पे है और इसके आगे भी छोटे-छोटे --